कागजाद रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे बूक सेंटर दिखाई दे रहा है वह पर ऊपर हिन्दी मे लिखा हुआ है मिथिला बूक सेंटर और कुछ लोग दिखाई दे रहे है बाहर की तरफ़--